बहोत अच्छा से है किसी भगवान का पूजा किया जा रहा है जिसमें बहोत सारे कलश है और एक मां है छोटा सा बच्चा अपने घर को अच्छे से सजाया है और पूजा कर रहा है।

कुछ लोग इनके पैर के नीचे चरणों मे पूजा कड़ रहें हैं। आरती कड़ रहें हैं।

यह फोटो किसी बड़े से पंडाल का है कोई पूजा का पंडाल है मान के चलो दुर्गा पूजा का ही पंडाल है जिसमें बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आएं हैं कुछ लोग बाहर में में दीप जला रहें हैं।

किसी शादी फंक्शन का है जिसमें यह फोटो किसी शादी फंक्शन का है जिसमें हलवाई लोग खाने बना रहे है गैस स्टोव पे --

लोग सर्विसिंग करने आयें होंगे यहाँ पे पेड़ के बाहर है जिसमे छोटी बाइक रखा हुआ कुछ लोग खड़े हैं।

यह फोटो किसी बाजार का है जिसमें वो एक बहुत सारे दुकान हैं और एक ऑटो लगा हुआ है एक लड़का रोड पर चल रहा है और एक बहुत हरे-भरे घनें वृक्ष हैं।